जैसा हैं भौन दिखाई दे रहा हैं काफी लंबी भौन हैं इसमें बहुत सारी दुकानें हैं।

इस साइड में कुछ लोग नहा रहे हैं नदी के ऊपर छोटा सा पुल भी बना हुआ है।

देख रहे हैं सामने तराजू भी रखा हुआ है।